और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रायर है उस पर टी_वी चलती हुई नजर आ रही है।

सामने में एक बहुत चौड़ी रोड हैऔर दोनों साइड से पहाड़ भी देखने को मिल रही है और वहाँ पर एक लोहे की खंबे हैउसमें बल्ब लटकाई है।

और एक साइड से लोहे से घेड़ी हुई रोड है और ऊपर में बहुत सारे आसमान देखने को मिल रहे हैं और सामने में एक बहुत बड़ी पहाड़ है।

और अंदर में बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं एवं बेंच है।

सामने में बहुत बड़ी मार्केट देखने को मिल रही है और वहाँ पे बहुत सारी दुकान है वहाँ पर पॉइनर पॉइनर पॉइनर की बोर्ड लगी हैपॉइनर अकेडमी की--ें

और बीच में पूरे पानी भरी हैकि नीले कलर की है और बीच में फ़ुहारा निकलने वाला भी बनाई गई है एवं साइड से बहुत सारे पैर पौधे देखने को मिल रहे हैं।

और आसमान में देखने को मिल रहे है वो की नीले कलर की है और उसमें बहुत सारे बुलबुले हैं।

बास से साइड्स लगाई गई है एवं आधे पे कपड़े लटकी हुई है।

चौड़े फिर ए_सी भी देखने को मिल रहा हैऔर वहाँ पर एक काउंटर उसमें शीशे लगे हुए उसमें बहुत सारे सामानें रखी गई है।

और उसके बगल में एक गेट है वो कि ब्लू कलर की गेट देखने को नज़र आ रही है और वहाँ पे एक लोहे की टीना फेंकी हुई है।